जिसका नाम है ब्रदर्स कैफ़े ।

अलग-अलग उपकरणों का प्रयोग कर रहें हैं एवं एक महिला जो वीणा को रखा हुआ है।

इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं की यहाँ पर दो ट्रैने --

यहाँ पर हम देख सकते है की यह तेल का एक कारखाना है जिसमें बहुत सारे --

भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं।

दरपद के सामने अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहें हैं।

जैसे की हम इसमें देख सकते हैं की यहाँ एक बहुत ही पुराना --

तथा इसके पीछे में जो अनुपयोग्य पदार्थ होते हैं उसे फेका जाता है।

जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहें हैं कि जो हमारे कूलर पर पंखा लगा होता है --

एक टंकी और एक ट्रांसफर्मा है।

जैसा की हम यहाँ पर देख पा रहे हैं की हमारे --

आ पुताई हुआ मंदिर हैं इसके ऊपर में एक ध्वज।

यह घर पुराना होने के कारण --

आप ये शहर से स्वागत है।

ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र हमें दिखाई दे रहा है।

ट्रक में इस समान को भरा जा रा है यहाँ पर दो व्यक्तियों द्वारा --

इस डॉक्टर इसकी बीमारी को पता लगा कर उनका --

सारे सामान एवं चर्च के सारे सामान --

अपने हिसाब से कपडे को अ-अ खरीद सकते हैं।

एक शेर और एक लरका है।

जैसे की हम यहाँ पर देख सकते है कि यह दुकानअ --

ढलवारा टी.जी. आर पर स्थित ह --

यह एक मार्किट का दृश्य है जिसमे बहुत सारे लोगं एक दूसरे सें --